उससे क्या धूप के प्रोडक्शन भी होती है।

खड़े होके क्या कर रहे हैं देखभाल कर रहे हैं पैसा ना चोरी हो जाए वहां से--

ये बहोत अच्छी चीज है हमको हमेशा ऐसे करना चाहिए।

दे देते है तो पुलिस वाले क्या होते है कि वेरी हेल्प फुल होते है कोइ से तं पंगा हो जाए तो पुलिस वाले हेल्प क --

कितना अच्छी चीज है ये मतलब इंसान के लिए नेचर के लिए कितनी अच्छी चीज है।

स्कूटी में आए हुए है व्हाइट कलर की एक टंकी भी दिख रही है मुझे यहां से वो एक बहोत अच्छी चीज हो--

नाइंटीस से चलते हुए आ रहे हैं सेंट्रल बैंक एक बहोत जादा नामी बैंक है।

अब देखा जाए की सामने में ग्रीनरी ग्रीनरी सीन है कितनी अच्छी अच्छी अच्छी पहाड़ है।

पानी वानी रखने के लिए ठंडा करने के लिए वो दिया हुआ है फ्रिज --

वॉव जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक म्यूजियम --

दोस्तो मै क्या कर सकता हूं मेरे को बताइये न वो मेरे को बोलते है मैं उन-

हासिल कर लिया तो ये बहुत अच्छी चीज है उसके लाइफ में हमको उस पे--